इस चित्र में हाजीपुरजंक्शन रेलवे स्टेशन दिखाया गया है बहुत सारे टांगा खड़े हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा है जिसके पीछे कई सारे सेल्फ में--

इस चित्र में बेंच पे दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं पीछे पीला बोर्ड दिख रहा है पिलर दिख रहा है छत दिख रही है।

बिजली के खंबे दिख रहे है पर्वत दिख रहे है आसमान दिख रहा है जाली भी दिखई दे रही है।

जिसमें मिर्ची पत्ता गोभी टमाटर आदि सब्जियां दिखाई जा रही है।

चित्र में एक पवन को लाइटिंग से बहुत सुंदर सजाया हुआ दिख रहा है।

चित्र में स्टेज के ऊपर एक नीले कलर का बैनर लगाया है जिसमे फ्रेशर्स लिखा है।

एक काॅंच के अलमारी में सामान रखा दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे मैदान दिखाई दे रहा हैखूब सारी खास दिख रही हैकुछ मिट्टी दिख रही है।

चित्र में हारमोनियम दिखाया जा रहा है।

बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखाई जा कलर रही है जिनका कलर पीला नीला है।

एशियन पेंट इजी कलर का बोर्ड लगा है।

जाली वाला सटर का काला गेट लगा दिख रहा है।